और काम एकदम जोर-शोर से चल रहा है।

जा रहे है ऑफिस में डाक घर के एक अंदर भी एक आदमी खड़ा हुआ काम कर रहा हैं।

अपने तन्मयते से पूजा कर रहा है।

और बोहोत सारी चीजों का समावेश लग रहा है।

बाहार ही लाइट का ट्रांसमीटर लगा हुआ है।

और बहुत सारी स्वच्छता भी दिख रही है।

इसमें पंडित जी बैठकर मंत्र पढ़ रहे है।

आजू-बाजू में बहुत सारे बिल्डिंगे हैं।

ये लड़की बहौत मेहनत कर रही है।

इंग्लिश मीडियम एकेडमी लग रही है।

जिसमें बहोत सारे बच्चे बहोत मस्ती कर रहे हैं।

कूल का काम करने में मग्न हैं।

बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया है खाने का --

अलग ही दिख रहा है। बोहोत नेगटिव एनर्जी आ रही है इसमे से।

विद्यार्थी लोग बोहोत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं शायद से चित्र निकाल रहे हैं।

बहुत मगंता से बच्चे लोग कराटे सीख रहे है।

होटल गेटवे कर्नाटका । ये एक कर्नाटका में होटल है।